पिक्चर में दिखाई दे रहे एक ठो झूला जैसा और जैसे कि यह जो कुछ एक विजिटर लोग विजिट करने के लिए मानो कि अ रेस्टोरेंट या फिर कैफे टाइप दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहोत सारा आ चार ठो चेयर है फिर टेबल फिर एक ग्रुप में दो तीन चेयर और एक टेबल --

व इसका पीछे में दो ठो स्टूडेंट्स बच्चा दोनों--

ऊपर में घर का ऊपर में डायरेक्ट कुछ रखा गी है बैनर टाइप बस्तर डेरी फार्म लिखी है उसमें बहुत सारा चीज जैसे की--

यहां पे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं एक ठो बिल्डिंग ।

खिड़की दिख रहे हैं बेड के पीछे में और हमें खिड़की में कर्टन लोग सुंदर सुंदर से लगाति हे लो --

ये पिक्चर पर एक ठो घर दिखाई दे रहा है।